यहाँ पर आप देख सकतें हैं आपको फूल का मार्केट नज़र आ रहा होगा कित्ते वैरायटी के फूल्स रखे हुएँ यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा तो शायद गुलाब ही रखे हुए हैं लाल कलर के फूल अलग ही दिख रहें --

और चेयरस का कलर तो आप देख ही सकते है वाइट कलर की चेयरस रखी हुई है। हर टेबल मे आपको पानी का जग नज़र आ रहा होगा कुछ टेबलो मे नहीं है वैसे।

आप देख सकते हैं आपको बत्तख नजर आ रहे होंगे। बत्तख की चोंच का कलर आप देख ही सकते हैं। ऑरेंज कलर की है और बत्तख देख सक --

आपको ज़ेब्रा दिख रहा होगा। ज़ेब्रा का कलर कापथिक आप देख ही सकते हैं ब्लैकेन व्हाइट कलर जो होता है। वही है ज़ेब्रा का कलर आप लोग देख सकते हैं साथ में यहाँ पर उसको जालियो में रखा गया --

पर आप देख सकते हैं आपको दुकान की फोटो दिख रही होगी। यहाँ पर तार लटका हुआ है ग्रीन एण्ड व्हाइट कलर में। आप लोग देख सकते हैं।

पर आप देख सकते है यह पर शादी का स्टेज नजर आ रहा होगा। यहाँ पर बहोत सारे लोग दिख रहे होंगे। शादी का स्टेज जो आप देख सकते है बहुत है भव्य तरीके से बनाय गया है।

आप देख सकते है आपको बोल्ड चेयर्स दिख रहे होंगे।

देख सकते हैं यहाँ पर मच्छी रखी हुई हैं अलग-अलग कलर की मतलब अलग-अलग कलर नही हैं अलग-अलग साइज़ हैं। यहाँ पर एक बार लटकता हुआ नज़र आ रहा होगा। ब्लैक एंड रेड में।

रेड एंड गोल्डन में है ग्रीन एंड गोल्डन मे है पिंक डार्क पिंक एंड गोल्डन मे है लाइट ब्लु और गोल्डन में है आप लोग देख सक --

यहाँ पर आप देख सकते हो आपको रेड कलर का पोस्ट ऑफिस वाला जो बॉक्स होता है वो नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में जो लोगो लगा रहता वो भी आपको नज़र आ रहा होगा।

और सारे ही काउंटर पे आप देख सकते हैं कि कुछ स्विच बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। यहाँं पर आप देख सकते हैं तीन शटर लगी हुई है ग्रे कलर की।